भैर बिटिन पिछाड़ी बिटिन एक स्कूटी छ खड़ी होईं यी के गैराजे स्कूटी छ हमे दिखेणीफ्रिज छ एक कांच वालू।

सलाद मा युकां प्याज काखड़ी अर निम्बु छा रखयूं ार मर्च भी छा एक रखीं अर चम्मच छन यूंका डाल्यां ये पर।

एक खांचा पर योंकी फुटबॉल छ रखीं एक पर योंका बैटमिंटन छन रख्यां एक पर योंकि शटल कॉक छ रखीं एक पर योंकि बॉल छ रखीं नीसाण योंकी जर्सी छन रखीं बगल मा योंका जूता छा रख्यां फुटबॉल की किट छ रखीं बैग छा रख्यां झोला छा रख्यां।

यू जु डी.जे छ यु फर यूटिलिटी पर पिक्स करयूं और पिछाड़ी बिटिन एक बिल्डिंग छ दिखेणी जु कि पिली रंग की छा और तार भी छन ये फर दिखेणी बहोत ही तीन-तीन लम्बी-लम्बी।